है पीछे घने-घने पेड़ दिखाई दे रहे हैं यह कोई --

पर दो फ्लैग लगे हुए हैं यह लोग किसी पैट्रियोटिक डांस की प्रैक्टिस करती हुई नजर आ रही है।

इस इमेज में जो कार नजर आ रही है वो किसी वंडर कार से कम नहीं है।

यहां पे चौक की वह बहोत अच्छी आउटलाइनिंग की गई है और पिच काफी --